सेलर वहां नजर आ रहे हैं और फ्रूटस में एप्पल है पोमोग्रेनेट है ऑरेंजिस है बनाना नजर आ रहा है और वहां पर मशीन दिख रही है।

केरेट दिख रहे है जो ब्लू कलर के येलो कलर के ऑरेंज कलर के है। और वहाँ पर बाम्बू दिखाई दे रहे है जो सपोर्ट के लिए टेंट के नीचे रखा है।